दुकान के बाहर फूलों से एक माला टंगी है।

यहां पर एक ने मास्क लगा रखा है उन दोनों ने हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं।

यहां पर एक प्लेट रखी है जिसमें दो काफी की कप रखी है पास में चम्मच है।

पास में एक ट्रैक्टर है आस पास पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक कार खड़ी है जो सफेद रंग की दिखाई दे रही है।